और यहां पे सरिया रेलिंग जैसे कुछ व वर्क भी हो रहा है और मजदूर है।

और इस स्कूल के साइड इलेक्ट्रिक खंभे लगे हुए हैं बोर्ड भी लगा हुआ है बैनर भी लगा हुआ है।

और एक पंखा भी लगा हुआ है इस रूम में और पीछे--

स्टैचू है मूर्ती है जहां पर एक आदमी उसको पकड़--

और कुछ आदमी वहां स्विमिंग पूल के रेलिंग पर बैठे हुए हैं कुछ आदमी टहल रहे हैं बड़े-बड़े पेड़ पौधे हैं।

हां कई खंभे लगे हुए हैं कुछ चढ़ रहे हैं कुछ उतर रहे हैं।

और मेज भी है उसमें इसको डिस्पोजल की थाली चम्मच रखे हुए हैं जो की डिस्पोजल में थाली है ब्लैक कलर में है।

ये एक दुकान है डिस्पोज़र थाली प्लेट वाली।

शीशे के रैक लगे हुए हैं और उस रैक को --

इस चित्र में यह दर्शाया गया है कि सुबह का सीन है जहां पे सुर्य देव उग रहे हैं निकल रहे हैं और--

अ पेड़ पौधे हैं और खाली है एरिया --

के नीचे मतलब चबूतरा बना हुआ और चबूतरे पे--

अह बहुत सारे यहां पे डब्बे रखे हुए हैं काउंटर पे।

और उस काउंटर के पीछे पर्दा लगा हुआ है गुलाबी कलर का एक आदमी भी बैठा हुआ है।

ये मंदिर का मंदिर का सीन है।

और इस मूर्ति के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो पीले रंग का है।

गुरुकुल के आसन पर गौतम बुद्ध जी की मूर्ति को--

उसी के बगल में मतलब सटा करके दिवाल के पास।

अ बहुत सारे लोग भी हैं इकट्ठे हैं और स्टेज भी बना हुआ है।

पाइप का और ये ढेर इकट्ठा रखा गया है और उसके बगल में --

फोल्डिंग वाली और एक कार है बैनर भी लगा हुआ है और साइड में इलेक्ट्रिक टावर भी गया हुआ हैं।

बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए है बिल्डिंगे भी है।

या और यहां पे कोई सारे आदमी है जो साइकिल को कर रहे हैं देख रहे हैं।

इस क्षेत्र में मंदिर का दृश्य है जो कि यहां पे कुछ महिलाएं हैं।

मूर्ति ही बहुत ही खूबसूरत है।

और लेडीसे यहां माता को भगवान जी को फूल चढ़ा रही है।

पहिया वगैरह भी रखा हुआ है रैक पर काफी सा ढेर सारे पहिए हैं।

इस चित्र में बहुत ही प्यारा ये हिरण का बच्चा दिखाई दे रहा है और अ काफी सारे घास है पेड़ पौधे हैं जंगली एरिया है।

बस खड़ी है कुछ यात्री यहां पे उतर रहे हैं कुछ चढ़ रहे हैं उस बस में।

कुछ जवान है कुछ बूढ़े हैं साल और--

अं जा रहे हैं चल रहे हैं रोड पर कुछ बस पे चढ़ रहे हैं कुछ--

और आसपास काफी मतलब अ अ छोटे-मोटे घर है।

और इसमें तीन चार ठो गेट जैसे दिख रहा है और ये दुर्ग जो है कि बहुत ही पुराना है।